बॉक्स लगा हुआ है और आने जाने वाला मशीन भी दिख रहा है।

एक व्यक्ति योगा कर रहे हैं और सभी एक साथ बैठकर एक सर्कल बनाती हुई दिख रही हैं।